और सामने काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इन्होंने नए नए कपड़े पहन रखे है और यहाँ काफी सुन्दर सजावट की गई है।

यह एक पुल है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने साइकिल पे केले के काफी सारे गुच्छे बांध रखे है और सामने एक बहुत बड़ी नदी है।

जो कि वाइट कलर का है और यहाँ सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है और बहुत से लोग कुछ मीटिंग कर रहे है।

यह एक आइस बॉक्स के ऊपर रखी हुई है यहाँ काफी सारे बर्फ के टुकड़े पड़े हुए है सामने एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है।